यह तस्वीर के अंदर एक अह शहर नजर आ रहा है।

जो कि एक मॉडल दिखाई दे रहा है आगे नीले रंग एक पानी को दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पर भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर सफेद रंग का ए_सी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर के अंदर गाय दिखाई दे रही हैं वे गाय हरे रंग की रस्सियों से बंधी नजर आ रही है।

यह तस्वीर के अंदर एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

ऊपर बहोत सारे पोस्टर नजर आ रहे हैं ये मुझे एक फिजियोथैरेपिस्ट का रूम नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोहे के पाइप भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्टील के डब्बे में रखी है।

पीले रंग के ग्लास रखे है।

पंचिंग बैग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक गाड़ी नजर आ रही है।

यहाँ कुर्सी पर बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहें हैं।

अ बहोत सारे ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहां गुलाबी रंग के बुड्ढी के बाल भी बे बेचे जा रहे हैं।

येह तस्वीर एक खेत की नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक घर की नजर आ रही है।

मैं दो कुत्तों का रंग काले रंग का है।

इस बिल्डिंग का रंग पीच कलर का है।

गुलाबी सफेद रंग का गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है।

वे ऊपर बजरंग दल लिखा हुआ नजर आ रहा है।